इस फोटो में मुझे एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक बकरी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक शिशा दिखाई दे रहा हैं।

यहां मुझे एक घड़ी दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।

उस फोटो मे मुझे एक स्टॉल दिखाई दे रहा है।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

फोटो में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे काउंटर दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे कुछ सजावट दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं।